सजावट अच्छी है |

यहाँ आगे लगता है कि कोई रेलवे स्टेशन है क्या है मंदिर ही है चबूतरा है बना हुआ इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं।

फूट पर बस खड़ी है आगे से एक स्कूटर आ रही है ।

इस बिल्डिंग में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।